ट्रायंगल शअ ट्रायंगल आकार में है।

ये दो मोटर पानी के हैं जिसकी वजह से हमारी टैंकी में पानी आता है।

ये एक ट्रेंड्स का मॉल है।

ये इसकी चौड़ाई बहुत है और इसकी लंबाई कम है।

काम कर रही है और इधर लअअ इधर ब्राउन कलर के टेबल है जिनके ऊपर वह बैठे हुए हैं।

और इन बोर्ड्स का रंग लाल है और इनके साइड में बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं।

स्पोर्ट्स की शॉप है जहां पर गोल्फ का सामान मिलता है और यहां पर कैप भी है यहां पर एक सफेद गोल्फ --

यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और लाल रंग की --

और इनके साइड में बहुत घने घने पेड़ है जिससे ये अपने बदन को खुजला रहे हैं।

यहां पर दो लड़के और एक लड़की है।

इसके बीच में एक गड्डा होता है और साइड में दो लाइनें होती है जिस पे गाड़ी के टायर रखे जाते हैं।

इस पिक्चर में हमें दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जो सड़क पर चल रहे हैं।

इसने लाल कलर का बैक और इसके राइट हैन्ड मे --

पहना हुआ है वो अपने चपल पे बैठ गया है।

जिसमे एक बहुत ही लंबा पेड़ है और इसके बगल में एक टाअर है।

ये एक खाने की टेबल है जहां पर लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है।

यहां पर ब्राउन कलर की प्लेट और सिटील की --

जगह है ये एक जंगल के बीचो बीच की जगह है यहां पर --

पंद्रह लोगों ने टेंट दिया हुआ है यहां पर एक आग भी जलाई गई है यहां पर साइड में चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं जो --

यहां पर बड़ों के छोटो के हर तरह के साइकल मिलते हैं।

ये तस्वीर बहुत ही अच्छी है यहां पर ट्यूलेप डालिया और भी बहुत सारे --

ऑरेंज कार्गो डॉट इन हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने अपना दिया है।

यहां पर इनके फोन नंबर भी लिखे हैं यह संजय गांधी नगर में है।

वॉलीवॉल स्टेडियम है जहाँ पर वॉलीबॉल खेल --

यहां पर एक मूर्ति उसके सामने दो फ्लावर्स है।

इसने अपनी पॉकेट में हाथ रखे हुए इसके गले में एक बैग भी है और जो देवी की मूर्ति के साइड में जो कलर है वो भी सफेद है।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

ये एक -- जगह है जहाँ पर ये सारे लड़के और लड़कियां क्रिकेट खेल रहे --

और एक आदमी गाड़ी ठीक कर रहा है जो --

टेबल बनाए हुए अलग अलग टेबल अलग अलग इंसान के लिए यहाँ पर सिल्वर कलर की कुर्सी --

ये एक स्टेट बैंक ए_टी_एम है जहाँ पर लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं यहां पर एक सफेद रंग की शर्ट पहना --

इस में एक बीच में एक डॉट और लाइन दी गई है।

अपनी उरान भरने के लिए यहाँ पर साइड पे --

हरा मैदान है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं यहां पर साइड में एक लड़का भी बैठा हुआ है।

यहाँ पर कुछ पत्थर जैसा है जिसने अपनी जिस पे इसने अपनी एक टांग रखी है।

ये बच्चे लाल रंग की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ग्रे ओर सफेद रंग की टीशर्ट पहनी हुई --

हरे हरे गाज भी है यहाँ पर।

ये एक टाइल्स का गुदाम है जहां पर हर रंग के टाइल्स पाए जाते यहां पर ऊपर एक--

मोटर भी है और साइड में हर तरह के टाइल्स है यहां पर कलर टाइल्स सफेद नीले हरे पीले हर रंग के टाइल्स है।